एक पेड़ दिखाई दे रहा है एक कच्चा सड़क दिखाई दे रहा है एक बिजली का खंबा दिखाई दे रहा है साइड में एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।

पहाड़ में बहुत सारे चट्टानें नजर आ रही है।